ये एक राशन की दुकान है जहां पे बहुत सारा आ बहुत सारी चीजे दिखाई दे रही है मैगी मासाले से लेकर कॉफ़ी आ--

ए.टी.एम का एक उः- कियर कोड नजर आ रहा हैं ।

आस पास थोड़े बहुत झाड़ नजर आ रहे हैं। थोड़ी बहुत गंदेगी भी है नीचे। कुछ घास लजर आ रहे है मिट्टी नजर आ रही है।

अ-अ बहुत सारी चीजे मिल रही है एक टीशर्ट दिखाई दे रही है यहां पे एक कैप नजर आ रही है।

यह एक मंदिर है जिसका आ- दरवाजा भी बंद दिखाई दे रहा है। मंदिर में बहुत प्यारी आकृति बनाई गइ है जिसमें घोड़े नजर आ रहे हैं।

एक रथ पर सवार एक भगवान नजर आ रहे हैं सूर्य देव नजर आ रहे हैं यहां पे। कुछ गाड़ियां सामने रखी हुई नजर आ रही --

खाने के लिए एक मैप दिखाई दे रहा है जो की नीला और ग्रीन कलर का नजर आ रहा है।